यह एक नदी है नदी के बीच में--

जिसमें और टू लेडीज़ और एक जेंट्स बैठे हुए हैं और लाइटिंग वेगेरा का प्रबंध हैं।

यह एक बस स्टैंड है जहां लोग अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं बसें ना होने के कारण कुछ लोग वहां पर बसों --

टहल रहे हैं और कुछ सफाई का भी--

बाहर व्हीकल में गाड़ियों में छोटी गाड़ियों बड़ी गाड़ियों और इसकी जो पाइपिंग लाइन वगैरा वो वाइट कलर की है।

स्वर्गवासी हो जाते हैं उसके लिए भी अम म म माला मिलती है जो--

बाइक खड़े हैं उसमें ब्लैक कलर का बाइक है कुछ हल्का सा रेड कलर की शेड दी हुई हैं।

पिक लगी हुई है बाबा भोलेनाथ की लगी हुई है और बीर बजरंगबली की लगी है यहां लोगो--

जो शेड डाला हुआ उसका कलर है जो सिल्वर कलर का हैं।

जो येलो कलर और ग्रीन कलर के बैलूंस वगैरा लगे हुए हैं और कर्टन वगैरा भी लगे हुए हैं।

और लाइटिंग का भी अच्छा प्रबंध है फुआरें का भी अच्छा प्रबंध है और साथ में ही यहां पर ग्रीन वगैरह जो फुआरा प्रब --

यहां पे साइड बैठने के लिए अच्छी सुविधा है और साथ में इधर--

यह एक शॉप है मोबाइल की शॉप है जहां चंदोरा टेलिकॉम है यहां पर हर प्रकार का मोबाइल जो है रिपेयर वगैरह किए जाते हैं यहां पर--

यह बिस्किट वगैरह हो गया। यहां पर बूंदी का भी--

शर्टे वगैराह और जोकेट वगैराह पड़ी हुईं हैं जिसमें--

कलर है जो ब्लू कलर और यहाँ पे जेंट्स जो है।

ये एक फूलों की शॉप हैं जहाँ पर लोग--

ऑरेंज कलर है यहाँ पे हर प्रकार के डेकोरेशन --

यह कारों की एजेंसी है जहां पर--

इसके साथ साथ बीमा वगैरा इंश्योरेंस वगैरा जो हर प्रकार की--

जो फैसिलिटी है वो दी जाती है यहां कु ए दो गाड़ियों का कलर जो है व्हाइट कलर है।